एक व्यक्ति स्टीकर की तरफ बाहर खड़ा हुआ है अंदर बहोत सारा सामान है।

दुकान का कलर लाल कलर का बना लगा हुआ है।

जिसमें कुछ लोग मोमबत्तियां लेकर खड़े हुए है।

यह एक रूम बना हुआ है जिसमें बहोत सारे गद्दे बिस्तर डले हुए हैं।

यह एक संभागीय पशु चिकित्सालय बना हुआ है जबलपुर संभाग में इसके बाहर एक--

कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं ऑटो खड़ा हुआ है एक रिक्शा चलाने के लिए खड़ा हुआ है कुछ बिल्डिंगे बाजू से बनी हुई है।

आकाश नीला दिख रहा है पानी भी नीला दिख रहा है।

ऊपर टीन चप्पर लगा हुआ है दूर तरह कुछ व्यक्ति दिख रहे हैं बॉक्स हमें खाली दिख रहा है।

यह एक झोपड़ियां जैसी टीन की पटरी बनी हुई हैं।

बेंच रखी हुई है स्कूल जैसे कमरा बना हुआ है सभी लड़कियां पेन कापी लिए बैठे हुए हैं।

और अ लैपटॉप्स रखे हुए हैं जिसमें फैन लगा हुआ है बोर्डिंग लगी हुई है कमरा सही तरीके से लग रहा है फैन लगा हुआ है।

जिसमें एक कार खड़ी हुई है दो बाइकें खड़ी हुई हैं एवं पेड़-पौधे लगे हुए हैं आने से दो रास्ता गई हुई है जिसमें से --

यहां पर तीन लैपटॉप लगे हुए हैं इसमें विंडो इलेवन स्क्रीन पर दिख रहा है जिससे की है ऑनलाइन से बाकी सभी कामों में कार्य करने के लिए इशू होता हैं।

खड़ी हुई है कुछ --